से अपने लेटेस्ट डिज़ाइन के बाल काटाते हे और यह दिखने में भी काफी बड़ा और काफी सुन्दर हे और यहाँ बहुत सस्ते दामों में बाल कटा जाता हे ।

दिख रहा है जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर लेटेस्ट डिजाइन का है और यह दिखने में काफी सुन्दर और बड़ा है। यहाँ लोग --